यहाँ पर कुछ फंक्शन लग रहा है और फंक्शन में कुर्सियाँ टेबल लगा हुआ है।

स्वेटर की दुकान है और यहाँ पर स्वेटर अम्म बीके अम्म्म बिक्रेता होता है ।